यहाँ पे एक घर दिख रहा है। घर के बाहर गार्डन है बड़ा सा। यहाँ से बगल में सजा ऊजा हुआ है। एक वाइट कलर का भी लगा हुआ है त्रिपाल जैसा। दो स्ट्रीट लाइट भी है।